इस चित्र में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया गया जिसका नाम टाउन टेबल नाम--

राखी दिखने में बहुत सुंदर लग रही है और ये अलग अलग फैशन की है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं आसमान भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

और दुकान पर कुछ सामान रखा हुआ है और कुरकुरे भी है।

इस के ऊपर एक टिन शैड पड़ा हुआ है और एक बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है।

जिसमें तीन दरवाजे है जो कि हरे रंग के है और द्वाल पर पीले रंग हुआ है और कुछ पिलर भी लगाए गए है।

और उसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है।